ये एक चौपाटी दिखाई दे रही है।

औ उसी बिल्डिंग के पास में एक पेड़ लगा हुआ। सामने रोड है।

पहले मल्टी के ऊपर ए ब्लॉक लिखा रहा है।

घर के सामने एक दो साइकिल खड़ी है। एक व्यक्ति साइकिल को पकड़ के खड़ा है। एक व्यक्ति नीचे बैठा हुआ है।

कुछ बांस से बनी डलिया एक दो फ्लावर पॉट है।

ये एक सरकारी बिल्डिंग सरकारी भवन नजर आ रहा है।